एक बड़ा सा नदी है। जिसमें एक छोटी सी नाव है। स नाव के ऊपर एक आदमी खड़ा है। जो कि डंडा लिए रखा है।

एक रास्ता है रास्ते बदल में एक एइच.डी.ऍफ़.सी बैंक है।

इस रूम में जो की एक हाल है यह मकान है इसमें नीचे टाइल्स से लगी है ऊपर लाइटे लगी है अगल-बगल खिड़कियां है।